यहाँ बहुत हरियाली है तथा जमीन पर अ हरी कलर की घास उग गई है और पेड़ भी है।

रखा हुआ है और लकड़ी भी हमे दिखाई दे रही है बाल्टी भी हमे दिख रही है और कुर्सी रखी हुई --

यह एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें पानी भरा हुआ है हरे कलर की घास भी दिखाई दे रही है तथा पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

कुछ नीचे मिट्टी भी है और कुछ जगहों पर घास भी उग रही है ।